एक पेड़ भी बाहर लगी हुई है और दो पेड़ पीछे लगी हुई है और इसके नीचे--

टेबल और कुर्सियां भी रखी हुई है बाहर एक आदमी खड़ा है जो बैग टांगे हुए है।

पीछे भी रैक में बहुत सारी कॉपी और किताब रखे--

बगल में एक बाटा शोरूम है और बाहर में कुछ ठेले भी लगे हुए हैं।

यह एक कथक डांस का कार्यक्रम हो रहा है।

जेवर भी पहनी हुई और पीछे दीवाल पे बोर्ड भी लगा हुआ है और पीछे फूल भी टंगे हुए हैं।

यह एक साइकिल की दुकान है जिस पर बहुत सारे रंग बिरंगे साइकिल रखे हुए हैं।

यह एक गाड़ी की शोरूम में जहां पर बहुत सारी स्कूटी रखी हुई है रंग बिरंगी और दो कुर्सी भी रखे हुए हैं।

बहोत सारे खाने के स्टाल भी लगे हुए जहां पे लोग खा पी रहे हैं।

एक आदमी खड़ा है जो उन्हें योगा सीख रहा है।

बहुत सारे हरा कलर के पेड़ बड़े बड़े हैं।

प्लेट पे बहोत सारे खाने के सामान भी रखे हुए हैं और बाहर लोग खा भी रहे हैं बैठ के।

एक स्कूल या यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है जो बहुत ही बड़ी है।

ये एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है जिसके बीच से एक नदी जा रही है।

यह एक छोटा सा शॉपिंग मॉल है जिसके सॉकेट से बहुत सारे खाने के सामान रखे हुए हैं और एक वकार भी रखा हुआ है।

एक बोरी पे चावल भी रखा हुआ है और एक कार्टून भी है।

कुछ बैट भी टंगे हुएं है बाल और दिवाल में व्हाइट कलर की--